उसके पास दो दो-तीन रिक्शा दिख रहे हैं टो टो रिक्शा --

और उसके साइड में मैदान के साइड में एक नेट देखें नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग।